यह एक शॉप है और इस शॉप मे चार पाँच बंदे घूम रहे एक बंदे शॉप खरीदने शॉप खरीदने आए हैं आइसक्रीम ले रहे हैं।

यह एक मैरिज हॉल है | यहाँ ये मुजफ्फरपुर मे है | और यहाँ पे एक आदमी घूम रहा है।

इसमे बैंक एस_एस_सी रेलवे का पढ़ाई होता है वहाँ पे एक एवं बल्ब भी है।

यह एक बगीचा है और बगीचे मे बहुत सारे बकरी भी हैं ।

आस-पास में बहुत सारे हरे-भरे घास भी हैं नारियल का पेड़ भी है और औरत एक बैठी हुई है एक औरत-बच्चे खा रहे हैं और सब साथ में घूम रहे हैं।

और इसके एक बगल मे एक औरत भी खड़ी है वो उम् टमाटर तोड़ रही है | आस-पास मे बहुत सारे पेड़ भी हैं ।

एक गणेश जी का मूर्ति है और गणेश जी के मूर्ति के बगल में बहोत सारे बोरा है बोरा में बहोत कुछ समान भी है।